जिस पर बच्चे चढ़े हुए हैं बच्चे जो बच्चे हैं जिन एक गंजी पहना हुआ है।

पोल भी है जिसके ऊपर लाल कलर का लाइट लपेटा हुआ है।

बिल्डिंग का कलर ब्लू एंड व्हाइट दिख रहा है यहां पर लोहे के एंगल से कुछ बनाया गया है यहां पर गार्डन में कई सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक दोकान का दृश्य है यहां पर कई सारे आदमी भी दिख रहे हैं जो कि स्वेटर एवं टोपी पहने हुए है।

यहां पर जमीन में कार्पेट भी बिछाया गया है जो कि रेड एंड ग्रीन कलर का है।

यह एक झरना का दृश्य है यहां पर तीन-चार आदमी झरने में बैठे हुए हैं यहां पर कई प्रकार के पत्थर भी दिखे हुए हैं।

इस गाड़ी में एंबुलेंस लिखा हुआ भी है यहां पर एक गली भी है।

एग्जाम हॉल का दृश्य है। जहाँ पर कई सारे विद्यार्थी एग्जाम लिखने के लिए टेबल पर बैठे हुए है।

मूर्ति के पीछे कई प्रकार के सुंदर से डिजाइन भी की गई है।

रोड का दृश्य है जहाँ पर कई सारे टेबल लगे हुए हैं और टेबल पर कपड़े को ओढाकर उसे ढका गया है।

यह एक अंगूर का दृश्य है जहां पर कैरेट के ऊपर पेपर बिछाकर उसमें अंगूर रखा गया है।